आप देख सकते है सामने एक घर की तरह दिख रहा है।

बच्चे है एक अंकल दिख रहे है। बेंच रखी हुई है।

होन्डाज होन्डाज और यहाँ पर आप देख सकते हैं।

आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं। कुछ पे नारियल्स --